तालाब है और यहाँ छे भाई बोट चला रहे हैं और यह इस तालाब बहुत गहरा है और इसमे बहुत जल-जीव रहते हैं। और और इसमे --